यह फोटो ऊपर से आ रही हैं झरने की है जहां पानी ऊपर की तरफ से चट्टानो से होता हुआ आ रहा है।

यह फोटो गाड़ी में रखे हुए पीकर की है लाउडस्पीकर की है।

यह फोटो एक खाने वाले आइटम की फोटो है जिसमें एक प्लेट में उपमा और उसके साथ चटनी रखी गई है।

और इस स्कूल के उपर एक बड़ा वृक्ष दिखाई दे रहा है जो स्कूल के बिल्डिंग से भी उँचा है।